यहा पर हमे एक फ़ैक्टरि दिख रही है फ़ैक्टरि मे काफी सारे कट्टे रखे हुए है यहा पे एक कट्टा उपर जाते हुए भी दिख रहा है यहा पे एक दो तिने मशिने भी दि--

यहा पर हमे एक गार्डेन दिख रहा है गार्डेन मे एक स्टेज भी लगा हुआ है स्टेज काफी सुंदर दिख रहा है वहा पर एक धुला धुलहन के बैठनेकी खुर्चि भी रखी हुई है।

यहाँ पे हमे एक ऑफिस का रूम दिख रहा है यहाँ पे चार पुरुष बैठे बी हुए है यहाँ पे एक पुरुष खड़ा हुआ है।